यह देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा--

यह देखने में बहुत ही अच्छा--

इस इमेज में मुझे एक कार --

इस इमेज में मुझे एक मेडिकल स्टोर और--

इस इमेज में मुझे एक कॉस्मेटिक की दुकान दिख--

इस इमेज में मुझे बहोत सारे पहाड़ दिखाई--

और एक लड़का खड़ा हुआ--